इस इमारत पर पूज्य देव भगत अतिथि भवन ऐसा गुजराती में लिखा गया है।

रेस्टोरेंट के ऊपर क्रैक्ड एग्स अ फॅमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ हैं।

एक बाइक भी खड़ी हुई है अंदर का फर्नीचर पीले रंग का सजाया हुआ है।

क्रिसमस के दिन हैं बाहर क्रिसमस ट्री को सजाया गया है।

चर्च के बाहर नीले रंग की एक ग्रिल है।

दरवाजे के बाई ओर एक बड़ा सा सफेद रंग का फ्रीजर और पास में पानी का कूलर है।

सामने टेबल और कुर्सी रखे हुए है जिनपे कुछ गिलास हैं।

दाईं ओर बेकरी का खाने का सामान रखा हुआ है।

सामने जो सर खड़े हैं उन्होंने लाल रंग का टी शर्ट और सफेद रंग की पैंट पहनी हुई है।

यह एक बहोत ही सुंदर दृश्य है प्रतीत हो रहा है।

वह नंगे पाव हैं बाहर बारिश हो रही है।

मकान की नींव रखी गई है उस मकान के पीछे भी एक दूसरा मकान बन रहा है।

दाई और एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं।

बाईं ओर के सबसे ऊपर के खाने में एक स्कैनर है उसके नीचे पानी का एक फ़िल्टर रखा हुआ है।

यह चित्र भगवान की रथ यात्रा का है।

और वहां माइक स्पीकर भी लगाए गए हैं।

उनको बेचने वाला पीछे की तरफ में मुंह करके खड़ा है।

दृश्य में कुछ रंगों के कारीगर रंगारे जो हैं वो रंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कैसे वो पत्थरों से बहते हुए नदी का रूप धारण करता है।

यह चित्र हमारे वलसाल जिले की कोई एक सरकारी कचहरी का है।

यह चित्र किसी मंदिर का दिखाई दे रहा है।

यह हरे रंग का मकान हैं जिसमें दो खिड़कियां और दो दरवाजे हैं।

तीन लाइट बिल के मीटर है ऊपर तोरण बांधे गए हैं सामने बहोत सी कुर्सियां रखी हुई हैं।

पहले आदमी का हाथ सोफे पर है दो औरतें दाई ओर खड़ी हैं।

सामने केले रखे हुए है उनके पास में एक अनानास है और पीछे रामफल है।

ऊपर काले रंग के पत्थर पर सुनहरी रंग से मानव सेवा ट्रस्ट वलसड वान प्रस्थाश्रम लिखा हुआ है।

सामने बड़े बड़े पत्थर है बाद में मुलायम रेत है।

सूर्य अस्त होने वाला है समुद्र सुनहरे रंग का लग रहा है।

यह संगमरमर की एक मंजिला इमारत है। जैन मंदिर है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

अशोक के कुछ पेड़ हैं बाउंड्री के बाहर बिजली का एक खंभा है।

यह एक इमारत है जो सफेद रंग की है।

ईमारत को काले रंग की ग्रिल से कवर किया है सामने कुछ बाइक खड़ी हैं।

यह किसी हवाई अड्डे का चित्र प्रतीत हो रहा है।

मंडप सफेद रंग का है बीच में खंभे जो हैं वो सुनहरे रंग के हैं।

इमारत के सामने ईंट और मिट्टी का ढ़ेर है।

इस चित्र में सामने एक क्रॉस है उसके आगे लाल रंग की एक कुर्सी है।

उसके पास ही एक औरत खड़ी है बड़ा सा आम का पेड़ है।

यह एक पीले और नीले रंग का बड़ा सा गेट है।

काउंटर पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है और स्कैनर और है हैंड सेनीटाइजर भी रखा हुआ है।

सामने बहोत ही सुंदर कत्थई रंग का नकाशी किया हुआ सोफा है।

सीढिया चढ़ते ही दो छोटे छोटे सफेद रंग के दरवाजे हैं।